क्रिस्चियन के मूर्ति हे कहुंक ले दिखत हे अऊ बहुत कन कार्टून बने - बने हावय अउ मस्त दिखत हे लाइट वगैरह भी हे डिज़ाइन भी दिखत हे।

बहोत बड़ी सा समुद्र इ कहूक ले दिखत हे ऐ दे पत्थरओ दिखत हे आउ ऐ दे बहोत सुंदर झाड़ी मन दिखत हे।